एक सुंदर घर है यहाँ बहुत सारे औरतें हैं।

यहां सब लोग कपड़े उपड़े सुखाए भी है एक आदमी भी है।

वक्त है यहाँ हवा भी चल रही है।

इधर पानी ये है और एक का डब्बा है झिल्ली थैली है और गुपचुप है।

यहाँ गोंदिया लिखा हुआ है।

यह कृष्णा जी बहोत सुंदर लग रहे है वहां पीपल के पत्ते जैसे व्हाइट रंग मे है--

यहां एक समुद्र है यहां का जहाज है उसके बाजू में छोटा सा बोट है।

और एक माता रानी को सलाम कर रहे हैं।

और एक तीन चार पाँच छह औरत भी है बहुत सारी है।

काली गाड़ी है सफेद कलर की व्हाइट पेन है सब जेंट्स लोग इधर--

पर यहाँ ज्यादा नहीं आती जिस दिन यह होता हैं उसे दिन आते हैं।

यह किसी की तकलीफ बकलीफ नहीं और दीवाल सफेद कलर की है बाजू मे टीवी है।

बहोत अच्छा और ये दिख रहा है इनका भगवान भी है।

एक जंगल है बहुत सारे पेड़ है एक नदी भी है।

बहुत घूमते हैं शेर चीते बंदर उंदर भालू उलू पा।

बहोत सारी बसे कलर हुआ एक सफेद है उसपे स्टीकर लगा है।

उसके बाजू में मीटर लगा हुआ है बड़ा सा--

बहुत अच्छा है एल_आइ _सी ऑफिस इसका डिज़ाइन विजाइन सब अच्छा है नीचे में टाइल्स लगे हैं।

एक झूमर की दुकान है यहाँ पर बहुत सारे झूमर बहुत अच्छे डिज़ाइन विजाइन हैं फैन हैं।

इसका सजावट भी कितने अच्छे की है बाजु मे एक गणेश भगवान की मूर्ति मा मड़ा है।